हाँथी के दाँत बहुत बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं।

ट्रेन से कुछ लोग उतरते और कुछ लोग चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मॉल में बहौत सारे कपडे रखे हुए हैं।

ब बगीचे के उस पार बड़े-बड़े --

बनियान पेहन के मौज में मंजन करता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बच्चू बड़ी मंदिर के पास एक छोटा मंदिर बना हुआ है।

यहाँ पे बहौत सारे लोग गेस्ट हाउस के बाहर ही खड़े हुए हैं।